नीचे फर्श पर टाइले लगी हुई है वहां पर रेड कलर की कुछ ब्लैक कलर की कम्बल सी पड़ी है।

उर एक अलमारी पड़ी है अलमारी के कन एक छोटो सो तकतों पड़ो है तकता कन अलमारी पड़ी है उर एक लाइट भी लाग री है।

यहाँ पर एक घर है और ये ग्रीन कलर की यहाँ पे पेड़ पौधे है साथ में घास है वहां ईंटो वाला एक घर है फिर एक पेड़ भी है फिर खम्बा भी है।

और अट्ठ ताकडियो बाट पड्यो है और अट्ठ थैली पड़ी है और ये लीला कलर को सो पड्यो है।

और ऊपर जो पिंजरों ब्लैक कलर मैं है कोई व्हाइट कलर है तोतो को कोई ब्लैक ग्रीन कलर है।

आ गाड़ी है जे में फूल लाग रा है बड़ा सारा जो कोई पीला कलर फूल लाग रा है कोई लाल कलर का फूल है और एक टाबर सो खड़ो है।

एने सामने एक खम्बो सो है जामे लाइट लाग रही है और ये पेड़ से है और ये आसमान है जो धोला कलर को नीलो कलर को है और फुल हरियाली है।

या पोस्टर लाग रयो है कोई लुगाई को बीक ऊपर लुगाई है पोस्टर पे और बोला सारा जना खड्या है।